यह बारिस का पानी हे ऐसा लग रहा है पानी बहुत ही --

स्वूमिंग पूल है है --

दीवाल बहुत कलर की ग्रीन कलर का फीका ग्रीन का--

यह एक बुक दुकान है वो जो बुक को बाहर निकाल के बइठे हुए है बेचने के लिए--